दोस्तों bash में string and file attributes comparison के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे
* string comparison string comparison और file attributes comparison file एट्रीब्यूट्स comparison
हम कुछ उदाहरणों का प्रयोग करके यह सीखेंगे
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
* ubuntu लिनक्स 1204 operating system और
* gnu bash version 4110
कृपया ध्यान दें इस tutorial के अभ्यास के लिए gnu bash version 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है
अब परिचय से शुरू करते हैं
bash में एक string की तुलना दो तरीकों से की जाती है
1 पहला: == equal to equal to operator का प्रयोग
दो equal strings की तुलना के लिए
2 दूसरा: != not equal to operator
दो not equal strings की तुलना के लिए
एक उदाहरण देखते हैं
मेरे पास यहाँ एक सरल program है जो यूज़र id जाँचता है
अपने editor में एक file खोलें और इसे strcompare dot sh की तरह सेव करें
अब अपनी strcompare dot sh file में यहाँ दर्शाये गए की तरह code type करें
मैं code समझाती हूँ
यह शीबैंग line है
whoami command मौजूदा यूज़र का यूज़रनेम देती है
if statement string root के विरुद्ध variable whoami का output जाँचता है
यहाँ हमने strings की तुलना करने के लिए notequal to operator प्रयोग किया है
यदि मौजूदा यूज़र root यूज़र नहीं है तो यह निम्न statement को echo करेगा
you have no permission to run strcompare dot sh as nonroot user
यहाँ $0 dollar zero zeroth आर्ग्यूमेंट है जो अपने आप में एक file का name है
यदि यूज़र root यूज़र है तो यह welcome root! को echo करेगा
फिर हमारे पास program के लिए exit statement है
और यहाँ fi के साथ हम if statement को समाप्त करते हैं
exit statement के बारे में अधिक जानने के लिए अपनी slides पर वापस आते हैं
प्रत्येक program एक exit status returns करता है
एक सफल command 0 zero returns करती है
एक गलत command एक nonzero value returns करती है
यह error code की तरह समझी जा सकती है
हम exit statement की return value को रुचि के अनुसार चुन सकते हैं
अब program को निष्पादित करते हैं
अपने keyboard पर एकसाथ ctrl + alt और t कीज़ दबाकर terminal खोलें
पहले system के मौजूदा यूज़र को जांचते हैं
type करें whoami
enter दबाएं
यह मौजूदा यूज़र का name output करेगा
अब अपनी script को निष्पादन योग्य बनाते हैं
type करें chmod + x strcompare dot sh
type करें dot slash strcompare dot sh
output प्रदर्शित होता है:
you have no permission to run dot slash strcompare dot sh as nonroot user
अब वही program root यूज़र की तरह निष्पादित करते हैं
type करें: sudo dot slash strcompare dot sh
यह password के लिए पूछेगा
यहाँ password प्रविष्ट करें
output प्रदर्शित होता है: welcome root!
अब file एट्रीब्यूट्स की तुलना के बारे में सीखते हैं
मेरे पास पहले से ही code का कार्यकारी उदाहरण है
इस program में हम जाँचेंगे कि दी हुई फाइल है या नहीं
file1 variable है जिसमें हम file का path सेव करते हैं
hyphen f command जाँचती है कि file है या नहीं
और क्या यह एक सामान्य file है
अगर condition true है तो यह file exists and is a normal file echo करेगा
अन्यथा यह file does not exist echo करेगा
terminal पर वापस आते हैं अपनी file निष्पादित करते हैं
type करें chmod plus x fileattrib dot sh
type करें: dot slash fileattrib dot sh
आउटपुट file exists and is a normal file की तरह प्रदर्शित होता है
अब हम जांचते हैं कि फाइल खाली है या नहीं
अपने program को निष्पादित करने से पहले मैं empty dot sh named एक खाली फाइल बनाऊँगी
type करें gedit empty dot sh ampersand sign
save पर click करें file बंद करें
अब hyphen f attrib को hyphen s एट्रीब्यूट से बदलते हैं
यहाँ भी फाइल का नाम बदलें
type करें empty dot sh
अब पहले echo statement को
file exists and is not empty से बदलें
और दूसरे echo statement को
file is empty से बदलें
save पर click करें
terminal पर वापस आते हैं
अब मैं prompt clear करती हूँ
अब निष्पादित करते हैं
type करें dot slash fileattrib dot sh enter दबाएं
output है file is empty
अब any file एट्रीब्यूट देखते हैं जो किसी file की write premission यानी लिखने की अनुमति जाँचेगा
अपने program पर वापस आते हैं
अब hyphen s एट्रीब्यूट को hyphen w से बदलते हैं
अब पहला echo statement
user has write permission to this file से बदलते हैं
और दूसरा echo statement
user doesn t have write permission to this file से बदलते हैं
save पर click करें
मैं इस उदाहरण के लिए एक अलग फाइल प्रयोग करूँगी
मैं एक फाइल चुनूँगी जो readable नहीं है या जिसको लिखने की अनुमति नहीं है
अब मैं file का path
slash etc slash mysql slash debian dot cnf से बदलती हूँ
save पर click करें
अब अपना program निष्पादित करते हैं
अप arrow की दबाएं enter दबाएं
हम देखते हैं कि आउटपुट user doesnt have write permission to this file प्रदर्शित होता है
अब file एट्रीब्यूट्स पर आधारित अन्य उदाहरण देखते हैं
इस उदाहरण में हम जाँचेंगे कि क्या file1 file2 से नयी है
अब program देखते हैं
ध्यान दें कि हमारी file का name fileattrib2 dot sh है
अब पूरा code समझते हैं
यहाँ हमारे पास दो variables file1 और file2 हैं
ये दो files पहले ही बनायी गयी हैं और दोनों खाली हैं
यहाँ हम जाँचते हैं कि क्या file1 file2 से नयी है
अगर condition true है तो हम print करते हैं file1 is newer than file2
अन्यथा file2 is newer than file1
यह एक अन्य if statement है
यहाँ हम जांचते हैं कि क्या file1 file2 से पुरानी है
अगर condition true है तो हम print करते हैं file1 is older than file2
अन्यथा हम print करते हैं file2 is older than file1
अपने terminal पर वापस आते हैं
पहले हम empty1 dot sh फाइल को edit करेंगे
मैं केवल इसमें एक echo statement जोडूँगी
type करें: echo double quotes में hiii double quotes के बाद greater sign साइन empty one dot sh enter दबाएं
अब अपनी script को निष्पादन योग्य बनाते हैं
type करें chmod plus x fileattrib2 dot sh
अब type करें dot slash fileattrib2 dot sh
हम निम्न की तरह output देखते हैं
file1 is newer than file2
file2 is older than file1
अब empty2 dot sh file को edit करते हैं
यहाँ भी मैं echo statement जोडूँगी
type करें echo double quotes में how are you quotes के बाद greater sign साइन> empty2 dot sh
अब मैं prompt को clear करती हूँ
अब हम दोबारा अपनी script को निष्पादित करते हैं
अपarrow की दबाएं
dot slash fileattrib2 dot sh पर जाएँ enter दबाएं
output निम्न की तरह प्रदर्शित होता है:
file2 is newer than file1
और file1 is older than file2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
इसको सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा
string कम्पैरिजन फाइल एट्रीब्यूट्स
== equal to equal to
!= not equal to f hyphen f
s hyphen s w hyphen w
nt hyphen nt और ot hyphen ot एट्रीब्यूट्स
एक नियत कार्य में कुछ अधिक एट्रीब्यूट्स का अन्वेषण करें
उदाहरण : r
नीचे दर्शाये link पर उपलब्ध video देखें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
इस mission पर अधिक जानकारी नीचे दर्शाये link पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद